ये एक कपडो कि दुकान है और इस दुकान में छोटे बडे बच्चो के सभी के कपडे मिल रहे है जिसमे बहुत रंगबिरंगी कपडे नजर आ रहे है।

ये एक बहुत बड़ी मंदिर जैसा है। जिसमे बहुत सारी रोशनी लगी हुई है और इसमे बहुत सारे लोग बैठे हुए है। जो क एक दूसरे से बाते भी कर रहे है।

और इसमे तीन कुर्सिया रखी हुई है। नीचे मार्बल बिछा हुआ है और बाहर दीवार पे एक घड़ी लगी हुई है और दीवार के नीचे परदा भी लगा हुआ है और इसमे बहुत सा--

और इन लड़कियों के पीछे मुर्तीया भी रखी हुई है और ये लडकीया करारा पहने हुए है जो की नीला लाल और सफ़ेद और गोल्डेन कलर का भी दिख रहा है।

और उसके हाथो मे पानी की लकड़ी के गट्टे है जो की उस लकड़ी के गट्टे को पकड़े हुए है और वो उपर आने की कोशिश कर रहे है कैसे न कैसे किसी भी तरीके से --

इसमे एक गुलाबी कलर की दीवार भी है जिसमे दो आदमी खड़े एक लड़का खड़ा हुआ है जो की कुछ काम --

यह बैंक है और इस बैंक का नाम एच _डी _एफ _सी बैंक है और यहाँ पर बहोत सारे लोग नजर आ रहे है। बैंक के बाहर--

यह एक बहुत बड़ी सी जगह है। जिसमे बहुत सारे लोग खड़े और बैठे हुए है और इसमे बहुत सारी कुर्सिया भी रखी हुई है।

ये एक बहुत खुला आसमान सा है और इस आसमान के नीचे गाड़ी टिले कार और नीचे नारंगी कलर की सड़क सी नजर आ रही है।

ये दो आदमी खड़े हुए है और ये घर बना रहे है और इसमे थोड़ी बहुत सारी लकड़िया भी लगी हुई है

यह एक परचूनी की दुकान है जिसमे बच्चों की खाने की बहुत सारी चीजे रखी हुई है और एक लड़का बेच रहा है जो की टेबल के उपर बहुत सारी दिख रहे है।